कुछ यहां पर हमें दिख रहा है खिड़कियां जिसका कलर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है व्हाइट साथ में ही यहां पर--

सामने कि और दिख रहा है और हमें दिखाई दे रहा है रेड कलर यहां पर पीछे की और कुछ टेबल --

व्हाइट कलर का बड़ा सा टावर दिख रहा है।

साथ में ही हमें दिख रहे हैं यहां पर--

ग्रीन कलर की यहां पर हमें घास दिखाई दे रही है।

जोकि यहां हमें दिखाई दे रे ह--

व्हाइट कलर की यहां पर हमें दीवारे दिखाई दे रही है।

यहाँ पर टेबल्स दिखाई दे रहें हैं जो की ब्राउन कलर के टेबल हैं।

यहां पर हमें दिखाई दे रहा है।

और कुछ पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे।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

यहां पर हमे दिख रहा है सोफा --

जोकि ट्यूब्स व्हाइट कलर की दिख रही है।

जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा दिख रहा है।

यहां पर वाइट कलर का सोफा दिख रहा है।

पीछे की ओर लाइट लगी हुई --

बहोत सारा एरिया क्या दिख रहा है जहां--